नीचे एक लेडिस की फोटो दिखाई दे रही है।

ए_सी का गेट लगा हुआ है।

सामने बहुत घांस दिखाई दे रहा।

उसके बगल में बहोत सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

ये पीछे बहुत सारे रबड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक छत दिखाई दे रहा है जिसमें ढलाई का काम हो हो रहा है ।

सामने एक बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है।

उसके नि ऊपर तार लोहे का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थल दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे--

पीछे बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है।

बगल में दोनों साइड फायर का वो रेड वाला दिखाई दे रहा--

टेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर एक ब्लैक रंग का हेलमेट ला रखा हुआ है।

यहां दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक पिला जो शर्ट पहने हुए है काला जूता पहने हुए है।

बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

तीन झंडे लगाए गए हैं।

बगल मैं दो छोटे-छोटे और मूर्ति लगाए गए हैं।

रूम दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सभी ब्लू कलर के चेयर पर।

बोलोरो दिखाई दे रहा है जिसका रंग सफेद है।

बगल में एक सफेद रंग का एक बड़ा बोर्ड जैसा लगा हुआ है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बंटी पान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पंखा लगाया गया है।

पीछे एक पोल दिखाई दे रहा है जिससे तार पार हुआ है।